जलिदार ग्राउंड है ग्राउंड में छोटे बड़े घास फूस हुए लगे है हुए छोटे छोटे पौधे है।

दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा है जिनके सफेद शर्ट पहने हुए ब्लैक पैंट --